पका हुआ अलग को अलग कर रहे हैं और साफ-साफ को अलग कर रहे हैं बहुत ज्यादा हरा मिर्ची हैं।

और बड़ा-बड़ा पत्थर है चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है और किनारे काई जमा हुआ हैं ।

यह नाला है इसके आस-पास चारो तरफ पेड़ पेड़ है बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है।

यहाँ पे एक लड़का बनियान में है लोवर पहना हुआ हैं।

वहाँ खड़े हुआ है और कुछ चीज उठा रहा है अपने बॉडी का मसल को--

और इसके चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है।